हरे कलर का रंग किया हुआ है यहाँ पे --

लगभग पचास से साठ मंजिल तक है और --

यहाँ नदी में बहोत सारे लोग नहाते हैं और यह नदी में मछली भी है बड़े-बड़े --

और यह बहोत ही पवित्र स्थान है मंदिर के बगल में एक तालाब बहोत बड़ा है वहाँ पे आम का भी पेड़ है।

और यहाँ पे बहोत सारे लोग आए हुए हैं चार पाँच गाड़ियां भी नीचे में है।